यहां पर पलंगो का कारखाना है लकड़ियों का जहां पर पलंग अलमारी बनते हैं।

ऊपर सीलिंग फैन भी दिख रहा है यहां पे--

ये सफेद रंग के कुर्सियां हैं उस पर फूल का पॉट भी है हां एक लड़की के हाथ के चूड़ियां भी दिख र --

बाज़ू में भी एक दुकान हैं वहां पाकेटा लटक रहे हैं सामने गाड़िया हैं।

एक आदमी खड़ा हुआ है खुले मैदान दिख रहा है एक डस्टबिन भी है उदय--